यहाँ कुछ चीज का फंक्शन है। इसलिए यहाँ पे ये लोग पुरु जेंट्स भी है और महिला भी है जो की डांस करने आई है। पोस्टर में भी कुछ लिखा है। ऊपर से फैन भी है और बगल-वगल --